आदमी लेडीज जेंस बच्चे बैठे हुए हैं।

यहां पिक्चर में हम देख रहे हैं यहां एक सारी सोरूम है जिसको मूर्ति से सजाई गई है।

यहां पिक्चर में देख रहे हैं यहां एक पुलिस थाना--

कमरे की डिजाइनिंग की गई है।

कुछ छात्र वहां बैठे हुए हैं।

ये बहुत अच्छे से सजाई गई है।

और कुछ छोटे बड़े मकान और बिल्डिंग है।

एक आदमी कुर्सी पे बैठे हुए हैं।

बैनर टंगे हुए हैं कुछ आदमी हैं जो आ जा रहे है।

यहां पर छड़ने आ जा रहे हैं।

यहां पीछे हम देख रहे हैं एक बहुत सुंदर--

यहां पिक्चर में हम देख रहे हैं। किसी चीज का समारोह होने वाला है।

हरे भरे पेड़ हैं।

यहां हम पिक्चर में देख रहे हैं।

यहां एक मूर्ति बनी हुई है।

कुछ बाइके लगी हुई है कुछ आदमी जा आ रहे हैं।

कुछ लड़कियों को बहोत अच्छे से सजाई गई हैं।

यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान रखे हुए हैं।